ये एक गाडी खड़ी हुई है जोकि फोर व्हीलर है और साइड में बिल्डिंग्स बनी हुई है घर के चारो ओर --

जैसा की आप इस पिक में देख रहे है सामने बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है और नीचे की ओर बहुत ही सुंदर बालकनी दिख रही है।

और उपर की और डैम बने हुए है और जिसमें की कुछ --

जैसा की आप इस पिक में देख रहे है सामने बहुत ही सुंदर मैरिज --

जैसा की आप इस पिक में देख रहे है सामने बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है जिस जोकि एक नगरपंचायत मारेगाँव की है।